लिबर ऑफिस draw में objects के साथ कार्य करने की बुनियादी बातों पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि कैसे:
objects को cut copy paste करें
handles का इस्तेमाल करके objects का गतिशीलता से आकार बदलें
objects को व्यवस्थित करें
objects को समूहीकृत और असमूहीकृत करें
समूह में प्रत्येक objects का सम्पादन करें
एक समूह के अंदर objects को स्थानांतरित करें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स version 1004 और लिबर ऑफिस suite version 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए watercycle file खोलते हैं जिसे हमने desktop पर सेव किया था
अब इस picture में तीन और बादल copy और paste करते हैं
पहले बादल चुनें फिर context menu देखने के लिए दायाँ click करें और copy पर click करें
फिर पेज पर cursor रखें context menu के लिए फिर से दायाँ click करें और paste पर click करें
किन्तु हम केवल एक ही बादल देख रहे हैं!
वो बादल कहाँ है जिसे हमने copied और pasted किया
copied किया हुआ बादल असली बादल के ऊपर pasted हुआ है!
बादल को चुनें और उसको बायीं तरफ स्थानांतरित करें
इसी प्रकार से एक और बादल बनाते हैं
बादल चुनें context menu के लिए दायाँ click करें और copy पर click करें
context menu के लिए फिर से दायाँclick करें और paste पर click करें
अब copied किये हुए बादल को चुनें और उसे बायीं तरफ स्थानांतरित करें
हम objects की प्रतियाँ बनाने के लिए short कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
एक object को copy करने के लिए ctrl + c
एक object को paste करने के लिए ctrl + v
एक object को cut करने के लिए ctrl + x
बादल चुनें और ctrl और c कीज़ को एक साथ दबाएँ
बादल copied हो चुके हैं
paste करने के लिए ctrl और v कीज़ को एक साथ दबाएँ
अब बादल चुनें और उसे इच्छित जगह पर स्थानांतरित करें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
अपनी draw file में दो पेज जोड़ें
पहले पेज पर दो objects बनाएँ
एक object को पहले पेज से दूसरे पेज पर copy करें
जाँचिये कि copied किया हुआ object कहाँ रखा गया है
एक object को cut करें और उसे paste करें इस उद्देश्य के लिए आप short cut कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं
जाँचें यदि object की प्रति बनती है जब आप उसे cut करते हैं
चलिए इस बादल का आकार बदलते हैं
अतः पहले इसे चुनें
अब handles दिखते हैं
अगला cursor को एक handles पर रखें जबतक arrowhead न दिखें
अब बाएँ mouse button को दबाकर रखें और बादल को छोटे करने के लिए arrow को अंदर की ओर drag करें
इसे बड़ा करने के लिए arrow को बाहर की ओर drag करें
इस arrow को बड़ा करने के लिए पहले इसे चुनें
अब cursor को एक handles के ऊपर ले जाएँ
नीचे वर्ग के साथ एक छोटा पारदर्शी arrow cursor की नोक पर दिखता है
अब keyboard पर shift button दबाएँ बायाँ mouse button दबाकर रखें और एरो के handle का इस्तेमाल करके उसे नीचे drag करें
object का आकार बदलने के लिए यह काफी सरल है यदि आप shift बटन दबाते हैं है न
handles का इस्तेमाल करके object के आकर को बदलने को dynamic resizing कहते हैं
इसका मतलब है कि हम वास्तविक माप का इस्तेमाल नही कर रहे हैं
objects का वास्तव में size बदलना हम आगे के tutorials में सीखेंगे
इसी प्रकार से इस आयत की चौड़ाई बढ़ाते हैं
आयत चुनें keyboard पर shift बटन दबाएँ और इसे upward drag करें
draw window के नीचे status bar पर देखें
ध्यान दें कि जब आप आयत का फिर से आकर बदलते हैं विस्तार बदल जाता है
status bar स्थान में और विस्तार में बदलाव को प्रदर्शित करता है
अब बादलों और सूर्य को जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा व्यवस्थित करते हैं
बादलों को पहचानने के लिए उन्हें बायीं से दायीं तरफ number देते हैं
नम्बर प्रविष्ट करने के लिए इस बादल को चुनें double click करें 1 type करें
उसी प्रकार से अन्य बादलों को भी number दें
अब बादल 4 चुनें और इसे सूर्य के ऊपर रखें
सूर्य के पीछे भेजने के लिए बादल पर दायाँ click करके context menu खोलें
arrange पर click करें और send backward चुनें
बादल 4 अब सूर्य के पीछे है
send backward एक object को वर्तमान परत के पीछे भेज देता है
अब बादल 3 को चुनें और इसे सूर्य के ऊपर रखते हैं
context menu के लिए दायाँ click करें arrange पर click करें और send to back चुनें
बादल 3 अब सूर्य और बादल 4 दोनों के पीछे है
send to back object को अंतिम परत पर भेज देता है
बादल जैसे slide में दिख रहे हैं वैसे व्यवस्थित करना काफी सरल हो गया है
चलिए बादल 4 चुनते हैं context menu के लिए दायाँ click करें arrange पर click करें और bring to front चुनें
bring to front object को प्रथम परत पर ले आता है
फिर बादल 3 चुनें context menu के लिए दायाँ click करें arrange पर click करें और bring forward चुनें
bring forward object को एक परत आगे layer आता है
अब बादल 2 चुनें और इसे बादल 1 पर रखें
बादल जैसे slide में प्रदर्शित हैं वैसे व्यवस्थित हैं
अगला बादलों से numbers मिटायें
यह करने के लिए बादल चुनें और doubleclick करें फिर number चुनें और keyboard पर delete बटन दबाएँ
इस नियतकार्य के लिए यहाँ tutorial रोकें
एक वृत्त एक वर्ग और एक सितारा बनाएँ और उन्हें जैसा नीचे प्रदर्शित है वैसे व्यवस्थित करें
प्रत्येक object चुनें और arrange menu से प्रत्येक option को लागू करें
देखें कि प्रत्येक option के लिए आकृतियों की व्यवस्था कैसे बदलती है
अब जैसा इस slides में प्रदर्शित है वैसे object रखें और bring to front और sent to back options को check करें
अगला जलचक्र आकृति में जैसे इस slide में प्रदर्शित है वैसे पेड़ जोड़ें
हम एल block arrow और एक explosion का इस्तेमाल करके एक पेड़ बनायेंगे
insert और फिर slide पर क्लिक करके इस draw में एक नया पेज जोड़ें
यह हमारी फाइल में एक नया पेज जोड़ेगा
पेड़ का to बनाने के लिए drawing toolbar से block arrows चुनें
उपलब्ध आकरों को देखने के लिए छोटे काले त्रिकोण पर click करें और split arrow चुनें
cursor को पेज पर रखें बाएँ mouse button को दबाकर रखें और नीचे और किनारे की ओर drag करें
आपने दो शाखाओं के साथ पेड़ का तना बना लिया है!
चलिए शाखा में पत्तियाँ जोड़ें
drawing toolbar से stars चुनें
फिर छोटे काले त्रिकोण पर click करें और explosion चुनें
अब draw पेज पर जाएँ cursor को arrow के बाएँ कोने पर रखें आकृति बनाने के लिए बायाँ mouse button दबाकर रखें और बायीं ओर drag करें
अतः हमने पेड़ में पत्ते जोड़ दिये हैं!
हम इस आकृति को पेड़ की दायीं शाखा में भी copy करेंगे
आकृति चुनें
copy करने के लिए keyboard पर ctrl + c keys दबाएँ
paste करने के लिए ctrl + v दबाएँ
हम आकृति को पेड़ की दायीं शाखा की ओर स्थानांतरित करें
हमने एक पेड़ बना लिया है!
अब tree चुनें और इसे नीचे स्थानांतरित करें
केवल पेड़ का तना नीचे जाता है; पत्ते नहीं!
यहाँ पेड़ का तना और दो पत्ते भिन्न objects की तरह संसाधित हो रहे हैं
पेड़ के तने को वापस जहाँ था वहाँ स्थानांतरित करते हैं
सीखते हैं कि पेड़ के तने को और दो पत्तों को एक खंड में इकठ्ठा कैसे करें
समूह में कोई भी बदलाव उस समूह के अंदर सभी objects पर लागू हो जाएँगे
पहले पेज पर click करें जिससे कि कोई भी objects चुनित न हों
फिर drawing toolbar से select पर click करें
cursor को पेज पर ले जाएँ और पेज पर click करें
अब बायाँ mouse button दबाकर रखें और drag करें जिससे कि सभी objects चुनित हो जाएँ
आप एक dotted आयत देखेंगे
सुनिश्चित कर लें कि पेड़ के सभी objects इस आयत के अंदर चुनित हों
वैकल्पिक रूप से आप shift की दबाकर और फिर प्रत्येक objects पर क्लिक करके दो या अधिक objects चुन सकते हैं
context menu के लिए दायाँ click करें और group चुनें
अब पेड़ के किसी भी object पर click करें
handles प्रदर्शित होते हैं जैसे कि वह एक object के भाग हों
यह objects अब एक खंड की तरह संसाधित होते हैं
इन्हें अलग objects की तरह असमूहीकृत करने के लिए पेड़ को चुनें दायाँ click करें और ungroup चुनें
objects अब असमूहीकृत हो गये हैं और the अलग objects की तरह संसाधित होते हैं
इन्हें फिर से इकट्ठा करें
shift की दबाएँ और एक के बाद एक object चुनें
दायाँ click करें और group चुनें
पेड़ को अपने मुख्य drawing पेज पर copy करें
अतः copy करने के लिए ctrl और c पेज पर click करें और paste करने के लिए ctrl और v
अब मान लें कि समूह में हम एक अकेले object का सम्पादन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे
मैं objects का असमूहीकरण और फिर से समूहीकरण किये बिना इसे करने का एक सरल तरीका दिखाता हूँ
group चुनें और context menu के लिए दायाँ click करें
enter group चुनें
ध्यान दें कि समूह के बाहर सभी objects निर्योग्य हो गये हैं
केवल समूह के अंदर के objects का सम्पादन कर सकते हैं
उदहारणस्वरूप पेड़ के दायीं तरफ के पत्ते को चुनें और इसका आकार कम करें
अन्डू करने के लिए ctrl + z दबाएँ और आगे बढ़ें
अब हमें पेड़ का आकार कम करना होगा जिससे कि यह जलचक्र drawing में बैठ जाये
अतः हमें समूह के edit mode से बाहर आना होगा
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर cursor रखें दायाँ click करें और exit group चुनें
हम अब समूह के edit mode से बाहर हैं
पेड़ चुनें और cursor को नीचेदायें handle पर ले जाएँ
cursor आकार बदलने से arrow में प्रवर्तित हो जाता है
arrow को अंदर की ओर drag करें
और हमने पूरे पेड़ का आकार कम कर लिया है!
इस picture में तीन और पेड़ जोड़ें
पेड़ चुनें और copy करने के लिए ctrl और c और paste करने के लिए तीन बार ctrl और v
यह पेड़ की this प्रतियाँ बना देगा
अब हम इन्हें इच्छित स्थान पर स्थानांतरित करेंगे
इस कार्य को सभी पेड़ों के लिए दोहराएँ
अब ध्यान रहे कि प्रत्येक पेड़ तीन objects से now है
प्रत्येक पेड़ भी खुद से समूह बनाते हैं
हमने objects का समूह बना लिया है
drawing में add पानी तत्व जोड़ते हैं
पानी का प्रभाव देने के लिए हम आयत के आगे एक त्रिकोण जोड़ेंगे और फिर एक वक्र जोड़ेंगे
एक त्रिकोण बनाने के लिए drawing toolbar से basic shapes चुनें
छोटे काले त्रिकोण पर click करें और समकोण त्रिभुज चुनें
इसे बनाएँ और इसे आयत के आगे रखें
अब पानी की गतिविधि को दर्शाने के लिए रंग से भरा एक वक्र बनाते हैं
drawing toolbar से curve चुनें अब freeform line filled पर click करें
फिर cursor को त्रिकोण के शीर्ष पर रखें बायाँ mouse button दबाकर रखें और इसे नीचे drag करें
वक्र को व्यवस्थित करें जिससे कि यह बहते पानी की तरह दिखे
त्रिकोण और वक्र एकसाथ पानी बनाते हैं इन्हें केवल एक object के रूप में समूहीकृत करें
drawing toolbar से select पर click करें
अब cursor को पेज पर ले जाएँ बायाँ mouse button दबाकर रखें और त्रिकोण और वक्र को cover करने के लिए drag करें
दायाँ click करें और group चुनें
हमने जलचक्र की बुनियादी रूपरेखा बना we है
यहाँ आपके लिए एक और नियतकार्य है
इस picture को खुद से बनाएँ
इसी के साथ हम draw पर इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
इस tutorial में आपने objects के साथ कार्य करने पर बुनियादी बातों को सीखा आपने सीखा कि कैसे:
objects को cut copy paste करें
handles का इस्तेमाल करके गतिशीलता से objects का आकार बदलें
objects को व्यवस्थित करें
objects का समूहीकरण और असमूहीकरण करें
एक समूह के अंदर अलगअलग objects का सम्पादन करें
समूह के अंदर objects को स्थानांतरित करें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
spoken tutorial project team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
आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ